कुछ पोस्टर टंगे हुए भी नजर आ रहे हैं बगल में।

सामने हमें एक गेट नज़र आ रहा है और नीचे रेड कारपेट बिछीं हुयी हैं।

यहाँ पे हमें एक कार दिखाई दे रही है और बगल में हमें स्कूटी रखी हुई नजर आ रही है।

यहाँ पर हमें भारत सरकार आयकर कार्यालय वित्त मंत्रालय हरिद्वार उत्तराखंड दिखाई दे रहा है जिसके सामने कार खड़ी है और एक व्यक्ति सिलिंडर ले जाते हुए नजर आ रहा है।